पीतल और गोल्डन कलर का है।

लड़का पूजा कर रहे हैं।

गगरी रखा हुआ है उसके बगल में दो लोटी और रखा हुआ है।

यह एक बड़ा सा रेस्टोरेंट का फोटो है ।

सामने बहोत साफ सुथरा रखा है एक पिलर है।

यहां पर एक रोड है जिसके बगल में ढेर सारा गाड़ियां खड़ा है पीला कलर का गाड़ी है।

एक बस का फोटो है जिसके सामने एक अंकल जी खड़े हैं ।

पढ़ाई का फोटो दिख रहा है डिब्बा दिख रहा है।

यहां पर ढेर सारी कुर्सियां लगी हुई है।

यफ_बी भी लिखा हुआ उसके बैकग्राउंड रेड कलर है सामने से टोटो एक कार जा रही है।

ग्राउंड का फोटो है जहां पर एक बड़ा सा स्टेज शो करा जा रहा है।

और एक टूल भी रखा हुआ है।

रंग बिरंगा टाइप कुछ सामने बना हुआ है।

सामने ढेर सारा डेकोरेशन वाला फूल से सजाया हुआ है।

गाड़ी वेस्ट बंगाल का दिख रहा है।

यह फोटो में एक बड़ा सा खूबसूरत मॉल का--

लगा हुआ है जिसमें बाइ टू गेट वन फ्री लिखा हुआ है।

ढेर सारा मिर्ची रखा हुआ है।

यह फोटो में ढेर सारा आदमी नीचे बैठा हुआ है।

बगल दोनो पहाड़ो के बीच में एक बड़ा सा पिलर है।

इनका भारतीय स्टेट बैंक लिखा हुआ है।

बगल में ढेर सारा आदमी है।

टाइल्स नीचे बहुत अच्छा है।

सामने से एक आदमी टी शर्ट पहने हुए आ रहा है।

टावर लगा हुआ है नीचे ढेर सारा घाच है ।

नीचे ढेर सारा पानी बह रहा है जो पीला कलर का है ।

सामने कुछ गुलदस्ता वगैरा रखा हुआ है।

बगल में ढेर सारा छोटा-छोटा पौधा-वोधा लगा हुआ है।

जहां उसके पीछे ढेर सारा पतला पतला फूल और गेंदा फूल से सजावट किया हुआ है ।

नीचे ढेर सारा पेज वगैरह रखा हुआ है।

यहां एक फूल मार्केट है जहां पर ढेर सारा फुल रखा हुआ है।

और छज्जि मारा गया है।

एक मच्छी मार्केट का फोटो है यहां पर ढेर सारे तरह तरह के मछली है।

सामने एक लेडीज बैठी हुई है फोन पे बात कर रही है मास्क लगाई हुई है।

बगल में और भी ढेर सारे आदमी हैं।